और पटरे और बांस भी दिखाई दे रहे है।

एक व्यक्ति प्लास्टिक के चेयर में बैठा हुआ नजर आ रहा है।

जिस शॉप के बाहर द माही केक लिखा हुआ नजर आ र--

इस दृश्य में बहोत ही खूबसूरत एक बहती हुई नदी दिखाई दे रही है।

और कुछ बाइक भी लगे हुए नजर आए हैं।

जिस ढाबे के बाहर बड़ी सी बैनर लगाकर बिहारी ढाबा लिखा हुआ नजर आ रहा है।

जहा पे बहुत सारे गमलो में छोटे छोटे पौधे अधिक मात्रा में रखे हुए नजर आ रहे है।

और हरे कलर के टैन्ट भी दिखाई दे रहे हैं।

इस दृश्य में एक जिम नजर आ रही है।

और पोस्टर्स भी दिखाई दे रहे हैं।

इस शॉप के अंदर एक गमले में पौधा दिखाई दे रहा है।

और एक ब्लू कलर की बाल्टी भी नजर आ रही है।

और एक बच्चा साइकल से जाते हुए भी दिखाई दे रहा है।

यह दृश्य में एक व्यक्ति नजर आ रहा है।

इस दृश्य में एक बिल्डिंग नजर आ रही है।

इसके आगे बहोत ज्यादा मात्रा में बालू भी नजर आ रही है।